गोल ऑरेंज कलर की फ़ूल नजर आ रहे हैं बीच में एक रास्ता नजर आ रहा है।

यहां एक रोड दिखाई दे रहा है जिस पर गाड़ियां निकल कर जा रही है पास में एक ट्रक निकाल कर जा रहा है जिसका रंग सफेद है ऊपर पुल दिखाई दे रहा है।

ऊपर छत नजर आ रही है छत में लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है नीचे फर्श है फर्श का रंग ब्राउन और व्हाईट है।

दीवार दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की शटर है आगे स्टील का रेलिंग नजर आ रहा है।

यहाँ चार लोग खड़े हुए है पीछे एक और अअ अम्म ऑटो आता हुआ दिखाई दे रहा है।

पंखे हैं पंखे लगे हुए हैं पंखों का रंग काला है।

यहाँ एक पार्क है जहां पेड़ नजर आ रहे हैं पेड़ों का रंग हरा है नीचे घास है घास का रंग हरा है ये टेबल लगे हुई हैं टेबल लगी हुई है जिसका रंग स्लेटी है --

यहा एक बाजार में दुकान है जिसमें फूल पत्ते बेचते हुए --

यहां एक ट्रेन की पटरी है ट्रेन पटरी के सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही--

यहां एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर नीला सा पानी दिखाई दे रहा है ऊपर लकड़ी का--